बहुत ही अच्छा करा गया है और यहां पर साथ ही साथ दो व्यक्ति हैं।

और अगल बगल बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ग्रीन कलर के --

छत पर बड़ी बड़ी लाइटे भी लगी हुई है।

एक आदमी किनारे पर खड़ा है और नदी पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है जिस पर कुछ लोग चल रहे हैं।

तीन चार बड़े बड़े पंखे लटक रहे हैं जिनकी रोड बहोत ही लंबी है।

उन सब ने अपने चेहरे पर मास्क बांधा हुआ है।

बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

मछलियां एक भूरे रंग की सतह पर पड़ी हैं। एक नाव या किसी अन्य सतह पर।

तस्वीर में नीचे की और कुछ गमले रखे हुए हैं और उनमें हरे पौधे लगे हुए हैं।